यह एक मार्केट है। यहाँ पर कुछ स्कूटी तथा बैकस खड़ी है और यहाँ पर एक ए.टी.एम. भी है.